ये भी कोई पार्क लग रहा है की यहाँ पर बहुत से लड़का दिख रहे है यहाँ पर बिजली के खम्बे भी दिख रहे है यहाँ पर हरा -भरा मैदान भी दिख रहा है।

हरी दिख रही हैं यहाँ पर कुछ पुरुष भी खड़े हुए हैं और महिला भी खड़ी हुईं हैं यहाँ पर ये तो पेट्रोल पम्प दिख रहा है यहाँ पर गाड़ियों का पेट्रोल डल रहा है यहाँ पर पेड़ पॉधे भी दिख रहे है।